ये वर्कर हैं झाड़ू निकाल रहे हैं पोछा दे रहे हैं और वर्कर अपना काम करते हैं।

यह कैफे रेस्टोरेंट है जिसके अंदर बैठ कर अपन खाना खा सकते हैं विश्राम कर सकते हैं।

कैफे में बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं बहुत अच्छी फैसेलिटीज मिलती हैं।

बहोत बड़ा कारोबार चलाएंगे यह मॉल --